बहुत तरह की लाइट लगाई गईं है। हरे कलर की ऑरेंज कलर की पिंक कलर की ब्लू कलर की जो देखने में वाकई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ये घर।